दो राड लगी हुई है यहां पे तार लगे हुए हैं यहां पर कुछ लोग खड़े आपस में बात--

यहां एक बाइक दिखाई दे रही है उसपे कैन टंगी हुई है।

यहां पे एक पोस्टर लगा हुआ है जहां पे रस दूध डेयरी लिखा हुआ है।

यह एक जाल बना हुआ है जो काले रंग का है लाइट के खंभे लगे हुए हैं।

यहां पे एक घर सा बना हुआ है।

दो तीन कुर्सी रखी हुई है यहां पे एक मेज पड़ी हुई है।

यहाँ पे दरवाज़ा कांच का दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ बोतल भी रखी दिखाई दे रही हैं।

टाली लाल और हरे रंग की है इसके ऊपर ईंटों का चट्टान लगा हुआ है।

यहां पे एक पीला पीला बैठक बना हुआ है।

यहां की खिड़कियां कांच की बनी है यहां पे एक आदमी है जो सोफे को सही कर रहा है।

यहां पे तीन आदमी खड़े हैं हाथ एक दूसरे के मिलाए हुए हैं।

इस दीवार का रंग लाल और पीला है यहां पे कुर्सियां भी रखी हुई हैं।

यहां पर लकड़ियों का गट्ठर है यहां पे दो आदमी बैठे हुए हैं।

यहां पिष्टी दिगंबर जैन सिद्ध पावागिरी जी हैं।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

यहां पे एक आदमी है जो पन्नी ओढ़े हुए हैं।

यहां पे एक जूडो वाले आदमी खड़ा है।

जो सफेद रंग के पोशाक पहने हुए हैं।

यहां पे टायर पड़े हुए हैं जो काले रंग के हैं यहां पे लंबे-लंबे बांस जैसे गड़े हुए --

कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा पौधा दिखाई दे रहा है।

यहां पे कुछ पाइपें दिखाई दे रही हैं इधर साइड में एक सफेद रंग का गद्दा है।

जो एक बॉक्स है लाल लाल रंग का दिखाई दे रहा हाथ में कुछ पकड़े हुए हैं।

यहां पे एक दुकान है जहां जो ज्वेलर्स की है।

यहां पर एक मंदिर दिख रहा है जहां जो सफेद रंग का है।

लाल रंग से कुछ लिखा हुआ है अंदर एक मूर्ति रखी है जो काले रंग की है।

यहाँ पे कुछ आदमी खड़े हुए हैं कुछ आदमी आपस में बातें कर रहे हैं।

आगे एक मैदान है उसमें छोटी छोटी घास उगी हुई है।

यहां एक आदमी छपा हुआ है पोस्टर पे--

कुछ बहोत सारी दुकानें लगी दिखाई दे रही है आस पास बहोत सारे खेत है।

ट्रैक भी दिखाई दे रही है जहां पे झंडे लगे हुए है।

इधर उधर पानी भी पड़ा दिखाई दे रहा है यहां पर दो ठेले हैं।

आस पास इधर उधर आदमी घूम रहे हैं यहां आसमान का रंग नीला दिखाई दे रहा है।

लाइट भी जलती दिखाई दे रही है यहां एक गैस सिलेंडर भी लगा हुआ है।

यहां पे एक मंच दिखाई दे रहा है जहां पे बहुत सारी लाइटें जल रही हैं।

एक सड़क दिखाई दे रही है जिसमें पानी हल्का हल्का सा पड़ा हुआ है।

छोटी छोटी घास उगी हुई है सड़क पर दो तीन लोग खड़े हैं बाइक लिए।

यहां पे एक बैंक दिखाई दे रही है जो भारतीय स्टेट बैंक के नाम से है।

यहां पे लाइट का खंभा लगा हुआ है जिनसे काले रंग के तार निकले हुए हैं।

यहां पे एक मकान दिखाई दे रहा है जो पीला और लाल है।